पीछे पेड़ पौधे घर है।

यहाँ पर मुझे एक--

यहां पर एक बहोत बड़ा--

पीपल नीम और बहोत सारी झाड़ियां है।

यहां पर एक लड़की को--

बहोत सारे लोग बैठे हैं।

कुछ बड़ा सा होटल है।

बहोत सारी लड़कियां और रेती गिरी हुई है।

एक फैक्ट्री जैसा लग रहा है।

यह आदमी अपने हाथों में--

इसमें बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई दिख रही है।

यहां पर बड़े बड़े गुब्बारे और फूल पौधे लगे हैं।

इसमें शीशे की खिड़कियां हैं।

यहां एक बहोत बड़ी दुकान दिख रही है।

इस दुकान में बहोत सारे चप्पल जूते और सेंडल रखे हैं।